पर बहुत सारी मूर्तियां भी बाहर बनाई गई है।

सभी मंदिरों को बाहर से जाली से घेर दिया गया है।

सभी तरफ अलग अलग शीशे का बॉक्स बनाया गया है।

उपर में एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारा किताबों को भी सजाकर रखा गया है।

और किनारे किनारे भी दो बड़ा बड़ा बॉक्स रखा हुआ है।

दुकान के अंदर एक काले रंग का सोफा और एक काले रंग का कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।

इन सभी समान के पीछे एक रैक बना हुआ है।

किनारे में बहुत सारा मोटरसाइकिल लगा हुआ है और एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल पंप के ऊपर में बहोत सारा उजले रंग का बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर तीन पंप और चार पिलर दिखाई दे रहा है।

दीवार में ही एक उजले रंग का बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

पल्प पीले रंग का है और ऊपर में उजले रंग का करकट लगा हुआ हैं।

एक लकड़ी का टेबल रखा हुआ है और किनारे किनारे कुर्सी लगाई गई है।

बीच में एक रास्ता बनाया गया है जिसमें एक व्यक्ति और एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।

बंबू में बहुत सारा फूल और टेंट लगाए गए हैं।

यह एक बड़ा सा हॉल का दृश्य है।

व्यक्ति काले रंग का बैग टांगा हुआ है।

अंदर में बहोत सारा शटर और बाहर में एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

आने जाने के लिए एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है रास्ते के किनारे में दो काले रंग का पोल भी है।

उसी में सभी सामानों को सजाकर अच्छे से रखा गया है।

बैनर लगा हुआ है जिसमें शिवम ऑटो पार्ट्स लिखा हुआ है।

विद्यालय उजले रंग का दिखाई दे रहा है।

चारों तरफ किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

गली में एक ब्लू रंग का ठेला दिखाई दे रहा है।

होटल के बाहर में ही टेंट और फूलों से बना हुआ खूबसूरत एक गेट बनाया गया है और इसमें लाइट भी लगाई गई है।

अंदर में बहुत सारी कुर्सियां और दो टेबल दिखाई दे रही है।

यह एक बड़ा सा मशीन का दृश्य है।

जमीन पर एक उजले रंग का बाल्टी और एक उजले रंग का बोरा है।

बिजली का पोल भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बहुत सारा तार भी है।

बोर्ड के ऊपर में एक उजले रंग का बल्ब जल रहा है।

अंदर में बहोत सारे लोग बच्चे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं।

ये बकरियां भूरे और उजले रंग का है।

सभी बकरियों को दो लोहे का ड्रम में खाने के लिए दिया गया है।